पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है।

हां दुकान में बहोत सारी चीजें दिख रही है।

यहां पर टेबल कुर्सी लगाया हुआ है।